आगे एक बहुत अच्छा रास्ता दिख रहा है जो चोरों तरफ हरीयाली से पेड़ों से घिरा हुआ है।

और एक सामने बहोत प्यारा सा पहाड़ दिख रहा है। सुबह की खिली-खिली धूप दिख रही हैं और बीच में पगडंडियां बनी हुई हैं।

ये ड्रेस किसी अस्पताल बैंक या डाक घर लग रहा है।

जहां पे एक वॉश बेसिंग लगा हुआ है और कुछ प्रोडक्टस रखे हुए हैं।

यहाँ पे कोई शादी का माहौल शादी या उत्सव का माहौल दिख रहा है।

ये किसी होटल या किसी जगह का रीसेप्शन दिखाई दे रहा है।

और छ लम आसपास मकान दिखाई दे रहे हैं।

जहाँ तीन बाइक खड़ी हुई हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है।

और पुरानी इमारत पे सीढियाँ बनी हुई हैं। एक सामने दीवार है।

डंडियों में लगे हुए और कुछ चिपके हुए है उसमें दिल के शेप में।

अ टी_शर्ट्स टंगी हुई हैं।

और कुछ काॅस्मेटिक्स रखे हुए हैं एक अलमारी में।

खाने-पीने के समान रखे हुए हैं। टॉफी बिस्किट सारे कुछ दिखाई दे रहे हैं।

और थोड़ा सा आसमान दिखाई दे रहा है और बोहोत सारे लोग एक ही तरफ --

एक्टिविटी कर रहे हैं और कुछ खिड़कियाँ दिखाई दे रहीं हैं। ये बच्चे सभी जमीन पे बैठे हूए हैं।